तेल और हम एक दूसरे हाथ में जग देख रही है ।

है ऊपर रात का समय है ।

और हमे खुला आसमान भी दिख रहा है और यहाँ हमे साइड में ए एक पीली सरियाँ भी --

एक बच्चा भी दिख रहा है जिस है ए ह और सो ह बगल में हमे कई एक दवाई की शीशी भी दिख रही है ।

यह एक शॉप है जो बंद पड़ी हुई है शटर लगा हुआ है और उनके ए ऊपर एक एक लाइट तीनो में लगी हुई है ।

और उसके बगल में दो एक बच्ची और एक आदमी जाता हुआ दिख रहा है।

यह एक स्टेज है जिसमें ऐ जिसमें हमें कई सारे कलाकार दिख रहें हैं जिनमें से तीन औरतें और एक आदमी है।

यह एक बॉडीबिल्डिंग की ई ई ही दुकान है यहाँ हमें बॉडीबिल्डिंग के कई सारे सामान दिख रहे है सामने एक शीशा लगा हुआ भी दिख रहा है।